यहां बहोत सारे गमले रखे हैं यहां--

यहां बहोत चेयर्स लगी हुई है।

उसके ऊपर साईं मोटर गैरेज लिखा है।

जहां दो कार खड़ी हुई हैं।

यहां पौधों के पत्ते हरे हरे हैं।

जहां बहोत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं।

यहां कई सारे गमले पड़े हुए हैं।

उनके पास मे एक बाल्टी पड़ी है।

यहां सीढ़ियां भी बनी हुई है।

जहां बहोत सुंदर डेकोरेशन की है।

यह कार बच्चों के लिए है।

जहां बच्चों के लिए काफी सामान --